इ पार्क बहुत खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर यहाँ पर कोई ऐसा है ही नही देखने वा --

पहाड़ है ए पहाड़ पूरा ढेरी पहाड़ है बड़ा-बड़ा पहाड़ है बुहत अच्छा लग रहा है देखने मे |

खुबसूरत है बहुत खुबसूरत दिख रहा है जो की बहुत प्यारा लग रहा है इ सब जगह भी अच्छा है खासा है।

और यहाँ पर उम छठ पूजा भी होता है फिर से यहाँ पर --

लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे खुबसूरत है बुहत प्यारा लग रहा है --

बहुत अच्छा-अच्छा बिल्डिंग बनाया गया है इधर जो कि बुहत खुबसूरत भी लग रहा है देखने में प्यारा भी लग रहा है ।

हर चीज अच्छा खासा है इधर सब कुछ दिख रहा है जो कि बहोत खुबसूरत बो --

ये नाए हैं बोटिंग कर रहे हैं लोग वोकिंग बोटिंग कर रहे हैं ।

मैं अच्छा लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पर बहोत प्यारा जगह है खुबसूरत है बहोत अच्छा लग रहा है देखने मे --

बहुत अच्छा लग रहा है कोनो लग रहा है कोई चीज का मूर्ति है यहाँ पर लेकिन बुहत अच्छा लग रहा है देखने मे मूर्ति।

और पूरा तार लगा है लाइन से जो की --

जो कि बहुत प्यारा लग रहा है मे और खुबसूरत लग रहा है बहुत अ --

जो की बैठ के अपना वगैरा कर रहे हैं लोग जो की बहोत अच्छा लग रहा है देखने में।